इस चित्र में भिन्न-भिन्न प्रकार के फलों को बहुत अच्छे से सजाकर रखा गया है ।

इस चित्र में एक मेज के ऊपर सफेद रंग की प्लेट में बहुत सूंदर और स्वादिस्ट पराठों को सजा कर रखा गया है।

इन सब्जियों को अलग-अलग बोरियों में भर कर रखा गया है।

और वही दुकान के ऊपर एस इंटरप्राइजेज लिखा हुआ नजर आ रहा है।

इस कैफे के बाहर सफेद रंग से मुसाफिर कैफे लिखा हुआ नजर आ रहा है।

इस चित्र में व्यायमशाला के अंदर कसरत करने के लिए भिन्न-भिन्न प्रकार का सामान रखा हुआ दिखाई दे रहा है ।